इस फोटो में लड़के दिख रहे हैं सभी लड़कियां नहीं हैं।

एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है यहां पर और दरवाजा है सीढ़ियां दिखाई दे रही है दूसरी तरफ कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और दिन का समय है।

इस फोटो में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

फर्श पर टाइल लगी हुई है व्हाइट दीवार भी सफेद रंग की है फर्नीचर ब्राउन कलर का है यहां पे एक अलमारी दिख रही है।

शीशा लगा हुआ है यहां पे और देखो यहां पे टूटियां लगी हुई हैं काफी सारी अलग अलग डिजाइन --

यानी की ये मतलब चौबीस घंटे खुला रहता है कोई जैसे अब आ जा रहे होते है जैसे कोई रोतक से बाहर जा रहे है कही और जा रहे--

और पीछे कितना बड़ा झरना दिखाई दे रहा है और ठीक है।

इस फोटो में सामने लिखा है और ओरिएंटल बैक और कौमर्स नीचे लिखा है ब्रांच जर्जर ।

सी_सी_टी_वी लगा है एक अंकल जी बैठे हुए हैं चेयर है बाहर काउंटर रखा कैलकुलेटर है।

इस फोटो में बारिश का मौसम दिखाई दे रहा है ठीक है और देखो यहां पे कुछ गाड़ियां हैं अंधेरा सा हो गया है दिन के समय में भी देखो--

इस फोटो मैं दिन का समय दिखाई दे रहा हैं सामने कि जो दीवार हैं वो हरे रंग कि दिखाई दे रही हैं।

काफी सारी लड़कियां दिखाई दे रही है।

ग्रीन कलर के ऑरेंज और ब्लू कलर के बलूंस हैं।

एक दो लड़कियां दिख रही है बाकी सभी यहां पे लड़के दिख रहे हैं फर्श पे पत्थर डला है।

ठीक है और उपल की तरफ एक पंखा लगा हुआ है एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पे।

यहां पे दो नान दो सब्जी रायता चटनी सलाद सत्तर रूपए प्लेट ।

आस पास मिट्टी मिट्टी है ग्राउंड है पूरा ठीक है यहां पे लोग खेल र--

तीन लड़के दिखाई दे रहे है ठीक है।